हरा -भरा दिख रहा है बहुत सारी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे दिखाई दे रहा है सफ़ेद दिख रहा है।

बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है दुकान रंग बिरंगी गेट दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत लाइट दिखाई दे रही है सामने अच्छा दो तीन तरह का कलर दिख रहा है कुछ भाईजान बैठे दिख रहे हैं ।

अच्छे खंभे दिख रहे है और पीछे कुछ पेड़ से दिख रहे है बहुत भीतर अंधेरा दिख रहा है।

यहाँ भी अंदर दिख रहा है किलेटाइप का लग रहा है यहां भी इधर भी पेड पौधे भी दिख रहे है नीचे भी अच्छा दिख रहा है हरा भरा--

यहां पर अभी स्टेज सजाई गई है वो दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे गाने बजाने वाले खड़े हुए हैकुछ बैठे से दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक मकान सा दिख रहा है इसके अंदर टेंट सा लगा दिख रहा है खंभे बने हुए है बहुत सारे लाल कलर के परदे लगे हुए है।

ये एक सीब का पेड़ दिख रहा है एक और जो बाजू मे गुलाबी सा एक और दिख रहा है खंभा सा--

चीज़े दिखाई दे रहे है और अच्छी भैय्या लाइट लगी हुई है अच्छे फूल लगे हुए है और अच्छे मे ये पंखा लगे हुए है नीचे बहुत सी कुर्सियां लगी दिखाई दे रही है ।

नीचे जट खुरसिया सी दिखाई दे रही है टेबल सी चोकोर अच्छा सा पेट लाल डिजाइन बनी हुई है बढ़िया सी लगी हुई हैं।

और नीचे अच्छा कलर दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है लाइट अच्छी लगी हुई है अच्छी स्टेज सजी हुई--

यहां पर बहुत बड़ा मॉल बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी दुकाने बनी दिखाई दे रही है बहुत सारे कपड़ा दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग खड़े हुए है नीचे अच्छा बढ़िया फर्श बना हुआ है अच्छा खंबा गड़े हुए हैं अच्छा लग रहा है ।

यहाँ पर भी स्टेज बनी दिखाई दे रही है और अच्छी बढ़िया डिज़ाइन से सजाई गई है बोहुत सारी परदाएं लगाई गई है।